इस इमेज में मुझे बहुत सारी महिलाएं अ दिख रही है सभी महिलाएं घर के अंदर है और ये सभी योगा कर रही है।

इस इमेज मे मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है यहां लड़की नल से कंचे धो रही है।